और सब्जी बन बनाते हैं लोग खाते हैं लोग।

ये लोग शायद प्लास्तरा कर रहा है इ लोग छत का सही हो जायेगा तो सही भी है लाइन लग रहा है यहाँ पे होल कर रहा है इ लोग।

यहां पे बहुत अच्छा पौधा है और एक कोई हाथ में अमरूद लिया है बहुत मस्त दिखने में दिख रहा है।

यहां गंगा जी है गंगा जी में लोग स्नान करते हैं बहोत अच्छा दिख रहा है और आर पार में घर भी है |